मोटर साइकिल दिख रही है रोड दिख रही है गेट दिख रहा है लोहे का लगा हुआ है और पीछे झाड़ दिख रह है।

और भी चट्टान नजर आ रही है जिसमे ब्लू बड़ा सा पानी दिख रहा है व्हाइट कलर का पानी दिख रही है गाय दिख रही है और बहुत बड़े-बड़े चट्टानें नजर आ रही है।

अ चार पाँच लाईटे दिख रही हैं जिसमे तीन पंखे दिखाई दे रहे हैं और कलर का पुता हुआ है काली परदे दिखाई दे रहे है नीचे फर्श दिखाई दे रही है।

ये रेल्वे स्टेशन दिखाई दे रहा है जिसमे बहोत सारी ट्रेने दिख रही है ।

और वाईट और नीले कलर का पुता हुआ है और कुछ पीले कलर का दिखाय दे रहा है नीचे फर्स --